बहोत सारे मजदूर सर मे गमछा बांध के काम कर रहे हैं।

साइकल और दो पहिया वाली मोटर साईकल --

यह एक मकान की तस्वीर है। मकान के सबसे ऊपर लिखा गया है ज्ञान गुरु अकैडमी ।

यह एक कमरे की तस्वीर है। कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज लगी है।

कमरे की छत टाइल्स से बनी है और फर्श संगमरमर की है।

इस स्थान में बिजली की लाइट्स के बदले मोमबत्ती की किरनों से रोशनी मिल रही है।

दीवारों पर नक्काशी की गई है।

प्रवेश स्थान के तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। दीवार का रंग लाल है।

दीवार का रंग नीला है।

और खम्बो को हरी और नीली लाइट से सजाई गयी है। जमीन में छोटे-छोटे घांस भरे हैं।

पटल के एक तरफ पुरुष और दूसरे तरफ महिला लिखी गई है।

जिनमें से एक ने लाल रंग की मिर्जई पहन रखी है।

यह एक मूर्ति कला की तस्वीर है।

बीच में काँच की मेज भी है। जिनमे फोन प्रदर्शनी के लिए रखी गई है।

खबर कागज से फूलों को ढका गया है।

अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाइयां उचित मूल्य में मिलती है।

यह तस्वीर तीन त्रिचक्र वाहिनी की है यानी ऑटो

प्रवेश द्वार चांदी रंग का है।